यहाँ पे मैटस वेटस बिछायी हुई है रेड और ब्लू कलर की।

अँड यहाँ पे बहुत सारे लोग जिम कर रहे हैं।

अं यहाँ पे टॉवल्स रखे हुए हैं एसी अँड और एंटरटेंमेंट का टीवी लगा हुआ है।

ओके गाईज जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का पिक्चर हैं जहाँ पर बहुत सारे रेफ्रिजरेटर्स लगे हुए हैं।

ये इस पिक्चर में बहुत सारे टाइप के रेफ्रिजरेटर रखे गये हैं।

तो गायज़ इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये किसी पार्क का पिक्चर जहां पे बहोत सारी ग्रीनरी हैं अ बहोत सारे स्लाइड लगे हुए हैं और अदर टाइप के भी झोले लगे हुए--

एं-और बेवरेजेस अँड बेवरेजेस सेक्शन हैं जहाँ पर बहुत सारी कोल्डड्रिंक अँड जूस ऊस रखा हुआ है बियर वियर है।

ओके गाईज इस पिक्चर में हमे बहुत सारी साइकल्स दिखाई जा रही है जो कि छोटे बच्चों की साइकल्स है।

अँड आगे पार्किंग भी हैं जहाँ पे बहुत सारी स्कूटी अँड ऑटो और गाड़ियाँ पार्क हैं।

ओके गाईज इस पिक्चर में हमें कोई पुरानी बिल्डिंग दिखाई गई है जहाँ पे ----

मुझे ऐसी किसी पार्क का पिक्चर है जहां पे ग्रीनरी है और एक स्लाइड लगी हुई है और बगल में दो आंटिया खड़ी हुई बे एक आंटी बैठी हुई है एक आंटी खड़ी है।

और अ यहाँ पे टाइमिंग भी लिखी हुई है कि यहाँ पे किस आवर में अवलेबल रहता है।

अँड अ ये सुबह का टाइम हैं यहाँ बहुत सारे लोग अ बच्चे हैं।

इस पिक्चर में हमें एक बस अँड एक कार दिख रही है।

युनिवर्सिटी की बस है अँड यहाँ पे कोई अ स्कूल या फिर कॉलेज कॉम्प्लेक्स लग रहा है कोई।

ओके गाईज ये किसी के अं अ खिलौने का स्टोर का पिक्चर है यहाँ पर बहोत सारे बच्चों के लिये खिलोने रखे हुए हैं बहोत सारे लोग --

एंड ये सुबह का टाइम हो रहा है एंड गुरुद्वारा बहोत ही बड़ा लग रहा है।

ओके गाईज ये किसी पूल का पिक्चर है जहा पे अ बहुत सा आसपास बहोत ग्रीनरी है।

अँड यहाँ पे लोग स्विंमिंग कर रहे है लगता है ये पूल बहोत बड़ा है यहाँ पर चार लोग अ दो लोग स्विंमिंग कर रहे है और दो लोग बैठे हुए हैं।

ओके गाईज ये किसी हॉस्पिटल का सिन है जहा पे तीन बेड्स लगे हुए हैं।

ओके गाईज इस पिक्चर में हम शायद देख सखते है ये किसी बुक स्टोर का इमेज है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल अँड सिविल इंजीनियरिंग अँड बहोत सारे टाइपके के इंजीनियरिंग के--

टिप्स भी व्हाइट कलर है अँड ये फ्लावर बहुतही ब्यूटीफुल फ्लावर लग रहा है अँड ये किसी एकही फ्लावर है।

जाप जिसपे फ्लावर्स भी लगे हुए है और यहाँ पर बहोत सारे टाइप के प्लांट्स है और यहाँं पर वहाँं पर बहोत टाइप के कलर के गमले भी हैं और पीछे बोहोत सारे पेड़ भी हैं।

में देख सकते हैं कि किसी ढाबे की पिक्चर है जहां पे बहोत सारे लोग भीड़ लगाके खड़े हुए हैं।

यहाँ पे बहोत सारी भीड़ है जो की दावत के लिए वेट कर रही है।

ओके गाइज ये किसी अह स्टोर का पिक्चर है जहां पे बहोत सारी टाइप के ड्रिंक्स रखें हुए है और यहां पे एक अंकल --

ओके गाईज़ इस पिक्चर में देख सकते है की किसी अगरवाल --

ओके गाईज इस पिक्चर में हम देख सकते है की ये किसी अ --

ओके गाईज ये किसी बुद्धा की स्टेचू लग रही है।

ट्रॅक्टर पे कोई बैठा हुआ नहीं है ट्रॅक्टर बहुत लगता है पुराना ट्रॅक्टर है।

ओके गाईज ये शायद से किसी शादी की डेकोरेशन का पिक्चर है जहाँ पे पीछे--

एक बॉल रेड कलरकी बहोत अच्छी कर्टेन लगी हुयी है अँड --

ओके गाईज ये शायद ही किसी अ मंदिर या फिर--

यहाँ कम से कम से कम आठ नौ सायकल है अँड ये सारी अलग अलग डिफ्रेंट कलर्स में और एक कही पे --

तीन दो बच्चे एर दो अंकल एक अंकल हेयर कट कर रहे हैं और एक अंकल हेयर कट करावा रहे हैं।

ओके गाईज ये पिक्चर शायद से किसी बुक सेंटर का है जहां पे--

अ शिवालिक बुक सेंटर लिखा हुआ है।

ओके गाईज ये शायद से किसी मंदिर का पिक्चर है जो कि--

री सर्विस कि जाती है उसका टायर्स बदले जाते है अदर थिग्न्स --

ओके गाईज ये शायद से किसी पार्क कि पिक्चर है जहाँ पे बहोत सारे फूल्स है और ब बिच में कुछ --

ओके गाईज ये किसी पार्क का पिक्चर है जहाँ पे--

बहोत सारी क्रीम भी हैं और लैम्प्स भी हैं।

यहाँ पे एक आंटी है जोकि अ साडी में और उपर उन्होनें ब्लू कलर का जॅकेट पहना हुआ है।

यहाँ बहोत टाइप तरह की चिप्स रखे हुए है अँड कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई है ऊपर उनका मेनू भी लगा हुआ है यहाँ पर इनका पीछे--

ओके गाईज ये किसी ये पोस्ट ऑफिस का ऑफिस लग रहा है।